जो कि एक घर भी है और बहुत बढ़िया है जो बहुत सारे गाड़ी उड़ी लगा हुआ है।

देख रहे हैं आप लोग के यहां पे तीन गुण और पानी भी है और जगह भी बहुत बढ़िया है हरा भरा है।

अपने-अपने जगह पर बैठे हैं और साइड में कुर्सी टेबल रखा हुआ है जो कि और साइड में --

यह तस्वीर देखने में बहोत बढ़िया लग रहा है पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के बगल में एक बड़ा सा ट्रक लगा हुआ है।

यह तस्वीर देखने से लग रहा है किसी होटल का तस्वीर है और बहुत बढ़िया होटल लग रहा है देखने में बहुत चमक रहा है होटल --

और लगवाए गए बीस-तीस आदमी लग रहे हैं बहुत आदमी बहुत अच्छे से आदमी लोग हैं बहुत बढ़िया लग रहा है इस तस्वीर में।

इस फोटो में और बहोत बढ़िया आईडिया घ फोटो है बहोत अच्छा लग रही है इस फोटो में तस--

और जोकि स्कूल के बच्चे लोग हैं शायद ड्रेस मिल रहे बच्चे को बहोत बढ़िया लग रहा है देखने में बहोत सारे बच्चे हैं यहां पे।

बहुत बढ़िया लग रही है दुकान और बगल में एक चेयर है बगल में एक चप्पल रखी गई है।

ये बहुत अच्छा होटल देखने में लग रहा है रेड कलर का इसमें पर्दा लगा हुआ है।

और बगल में मिठाई का कॉन्टर है ऊपर में लाइट लगी हुई है तीन अलग है और एक अलग है जो कि रस्सी में लपेट के लगाई गई है।

और तीन कलर की लाइट है ब्लू है पीला है और बहोत बढ़िया लग रहा है।

और एक अपने बच्चे के गोद में रखे हुए और एक रेड कलर का साइकिल से आ रहा हैं। बहोत अच्छे लग रहे है।

यह किसी किराना दुकान का तस्वीर है बहुत बढ़िया दुकान है इसमें बिस्किट इस्किट और --